पिक्चर में एक फिश शॉप है शॉप के सामने एक आदमी चेयर पर बैठा हुआ है जिसके सामने बहुत सारी मछली इधर-उधर बिखरी पडे़ हैं और आदमी के ठीक बगल में दो ड्रम्स है।